यहाँ पर हम लोग करो। एगो टेंपोआ ई साइडवा में लगल हई एगो टेम्पुआ ई साइडवा में लगल एगो बसा लागल हो उ साइडवा में अ ई साइडवा में दुगो आदमी खड़ा --

हर मौसम में एकदम मस्त लगो हेय देखे मे अभी ते पनिया साफ होअते पूरा अच्छा होअते देखा में बनियान सब अच्छा लगा देखो में बहुत ज्यादा अच्छा लगए हेय।